इसमें होटल दिखाई दे रहा है और--

मशीन सीमेंट को ऊपर उठा रही है यहां पर हम--

यहाँ पर कुछ घर दिखाई दे रहें हैं और यहाँ पर रोड भीं दिखाई दे रहा हैं।

इसमें बहोत बड़ा रोड भी दिखाई दे रहा है।

के डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं और यहां पर प्रिंटर भी दिखाई दे रहा है और यहां पर लाइट भी दिखाई दे रही है और यहां पर --

और यहां पर पशु भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें कॉटेज दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग भी दिखाई दे रही हैं। यहां पर--